इस इमेज में हमें शॉप दिखाई दे रही है| यहाँ पे शॉप के बाहर काँच लगे हुए हैं| यहाँ पर एक शटर लगी हुई है रेड कलर की यहाँ पे शॉप को बाहर से रेड कलर से पेंट किया गया है।

अलग-अलग मूर्तियां बनी हुई है छोटी-बड़ी मूर्तियां सभी ब्लैक कलर की बनी हुई है यहां पे दीवालो पे पिंक कलर पेंट किया गया है यहां पे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

इस इमेज में हमें पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी सारी घास लाइन से लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे है यहाँ पर राउंड शेप में पेड़ लगे यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे --